देखिए यहाँ दिवाली मनाया जा रहा है कितना अच्छा मनाया जाता है।

देखिए यहां एक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है बैंक देखने मे बहुत ही अच्छा लग रहा है ये बैंक सरारंजन है।

मिट्टी जे.सी.बी. से शायद खोदे है देखने में बहुत अच्छा लग रहा --

और ये बाजार मे बहुत सारे आदमी जाते आते है बाइक से टेंपू से बहुत सारे आदमी है।